रेलवे स्टेशन का ब्रिज है जिसके उपर सिडिया बनी हुई हैं। सीढ़ियों के आस-पास बोहत सारी रेल्लिंगे लगी हुई हैं तथा उपर चादर लगी हुई --

यह एक फंक्शन का समारोह किया गया है यहाँ एक रथ के ऊपर भगवान की सवारी निकल रही है।

यह एक नदी के ऊपर बना ब्रिज है जिसके किनारे पर एक तिरंगे को फहराया गया है।

तिरंगा शान से खड़ा है तथा एक कार गुजर रही है जिसका नंबर ए_पी थ्री नाइन डी_टी_जी फाइव नाइन थ्री फाइव --

यह एक रिवर के ऊपर बना हुआ ब्रिज इसके ऊपर से बहोत सारी बाइक स्कूटी टेम्पो रिक्शा व अन्य वाहन गुजर रहे।

यह एक पानी की झील है। जिसके अंदर बहुत सारे पक्षी तैर रहे हैं। जिनका कलर व्हाइट एण्ड ब्लैक है।